बोर्ड लगा हुवा है और यहाँ बहोत सारे जो है ट्रकें लाइन में खड़े हुए हैं। दोनों तरफ इस ट्रक पे रस्ता है एक तरफ आने का और जाने --

ये तस्वीर एक सड़क की है और सड़क के उपर एक बस आके रुकी है। जिसपे यह बहोत सारे यात्री चढ़ रहे हैं।

यह तस्वीर एक मंदिर की है जोकि बहोत ही भव्य और शांद् --

दिखाने के लिए रखे है और ये सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है।

बेच रहे हैं कुछ यहाँ ग्राहक भी आये हुए हैं जो साइड में खड़े हैं।

दायीं तरफ जो म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है जहाँ पर लोग नाच रहे हैं मजे कर रहे हैं।

खिली और यहाँ पे लोग अक्सर घूमने भी आते होंगे।

एक रिसेप्शन टेबल भी दिख रहा होगा।

और ये पानी में मजे करते हुए उन्होंने लाइफ --

यहाँ पे सभी लोगों के लिए गेस्ट के लिए बैठने के लिए बोहोत ही शानदार सोफे और --

यहाँ पे बहोत सारे गमले लगाए हैं। जिनमें बहोत्त ही बोहोत सारे पेड़-पौधे भी लगा रखे हैं।

ओर सरकारी हॉस्पिटल के बहार आप --

वो एक बोर्ड लग रहा होगा। जिसके ऊपर राज्य स्वास्थ्य एवम परिवहन कल्याण --

म्-ज्यादातर लोगो ने अपने चेहरे पर मास्क --

और इस पे सफ़ेद अक्षरो में लिखा हुवा है। राज्यकीय महाविद्यालय हरिमपुर ।

और अंदर दुकान में आपको बहोत सारे ड्राई क्लीनिंग के कपडे रखे हुए दिख रहे हैं। ड्राई क्लीनिंग की मशीन और --

और इसके पीछे कुछ चेयर और भी कुछ सामान रखा हुवा है।